यहाँ एक जगह है जहां पर बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पर कुछ कंप्युटर टी_वी --

उनका पैर पर एक मग़ा है और यहाँ पर बहोत सारे फूल और गमले लगे हुए हैं और यहाँ पर एक स्कूल बना हुआ है